ये लग रहा है कि कोई बिल्डिंग का काम कर रहा है बिल्डिंग नई नई बन रही है यहाँ पे बहुत सारी छड़े दिखाई दे रहा है और दो आदमी दिखाई दे रहा है।

उधर बा बादल छाये हुआ है और पीछे हारा-भरा वो देखने में अच्छा--

बाडी सोडी बनाया जाता हैं यहां पे कई लोग आते है और यहां हरा कलर कार्पेट भी बिछाया गया हैं।

ऊपर पंखा वंखा लगा हुआ है लाइट भी लगी हुई है यहाँ पीछे भी लाइन में लगे हुये आदमी भी है एक बड़क ब्लैक स्वेटर वूटर पहन के है कोट वोट पहन के है।